आप इस फोटो में देख सकते है इसमें एक कैटल है जो कि शायद --

यह आप देख सकते हैं ये शायद एक ग्राउंड है जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिग है यहां पे म आप देख सकते हैं कि इसके बार्डर पे घा घास उगाया है लोगों ने।

ये और आप देख सकते हैं ये शायद ल-व-फ- वीमेन की दुकान शॉप है ये मेन के कपड़े बहोत ही कम दिखाई दे रहे हैं। इसमे मेनली साड़ी फ्रॉग बगैरह --